ऑटो चल रही है एक बाइक जा रही है।

और कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं।

और वाइट कलर की ब्लैक कलर की--

ग्रीन जैसा मैट दिखाई दे रहा हैं।

उस पर भी कुछ लिखा एक्सचेंज अमर एक्सचेंज ऐसा कुछ लिखा है।

ये एक साबलीक घर जैसा है जहां पर अह थोड़ा क्रीम कलर का किया है और किनारी जो है लाल रंग की है।

ये एक सामने कपड़ों का शोरूम है जहां पर बहुत सारे कपड़ों को टांगा हुआ है और--

ये एक सामने कपल खड़ा है।

पीछे लाल रंग में वर्क लिखा हुआ हैं।

और सामने दुकान जैसी बनाई है जिस पर ऑटो केयर लिखा हुआ है।

मार्केट जैसी है फ्रूट मार्केट जैसी लग रही है।

और कुछ मार्केट मे जैसे कि फ्रूट जैसे मिल रहे है कुछ स्टूल लगे है।

काले रंग में ऑटो खड़ी है बाइक खड़ी है।

साइड में एक कार खड़ी है वो वाइट रंग में और एक बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर खड़े हुए देख रहे हैं कुछ--

जमीन पर थोड़ी घास जैसी दिख रही है।

और बाहर कच्ची ग्राउंड है मिट्टी ही मिट्टी है।

ये एक मंदिर है जोकि मंदिर में बहोत सारी डेकोरेशन की हुई है गेट है मंदिर का लिखा है गेट नंबर फोर ।